इस पिक्चर में एक टेम्पल दिखाई गयी हैं जिसमें दो सिढ़ीयाॅं बनी हुई हैं एक जाने के लिए है एक लोगों के आने के लियें है।

एक बैठे हैं एक वर्क कर रहे हैं। एक बड़ी-सी पेड़ है। बगल में एक घर है।

इस पिक्चर में एक सरेक सड़क दिखाई गयी है। साइड में एक घर है।

घर में छत बनी हुई है। ऊपर में भी लेबर है यहाँ पे काम कर रहें हैं।

काम चल रहे हैं। बहुत सारे लेबर वर्क कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे रॉड रॉड दिख रहे हैं।